एक हवाई जहाज है जो बहुत ही बड़ी है और बहुत ही बड़ा ऊपर पंखा लगा हुआ है।

इधर उधर आदमी खड़े हैं एक महिला खड़ी है जिनके साड़ी पहनी हुई है।

इनके पीछे मकान बना हुआ है जिनका कलर ही सफेद है पीछे पंखे लगे हुए हैं सफेद कलर के।